ये गाय है| गाय हमे पालना चाहिए उनको हरा हरा भोजन देना चाहिए जितना से जितना हो अच्छा हो अच्छा क्वालिटी उनके खाना मिलना चाहिए ताकि दूध दे सके और गाय से हमे बहुत फायदा है विटामिन डी मिलता है।

और कोई तरह का दिक्कत ना हो। ऐसे घर का निर्माण होना चाहिए। कही कोई दिक्कत नहीं फिर सेर सपाटा खेले बच्चा भी कोई दिक्कत न हो।